बिल्डिंग के बहोत सारी बारियां दिखाई दे रही है।

ये बहोत सारी बुक्स है अलग अलग प्रकार की बुक्स है मुझे लगता है कोई बुक्स का कारखाना या दुकान लगती है।

मुझे एक मुझे एक साफा दिखाई दे रहा है जिसके हाथ में बांसुरी बनी हुई है जिनके हाथों में एक बांसुरी बनी है।

बाहर फूलों से एक डिजाइन बनाई गई है जिसमें से तीन बार चक्कर लगाया गया है फूलों का और एक काउंटर दिखाई दे रहा है छोटा सा कांच का।

मुझे कुछ डिब्बे दिखाई दे रहे हैं कुछ डिब्बों में शायद कोई एल_सी_डी आल सी_डी लगती है कोई कंप्यूटर --

और साथ पेड़ पौधे लगे हुए है कि बच्चों के खेलने के लिए भी कोई बनाई गई है एक टेबल दिखाई दे रही है।

मुझे यहां एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है जो दो रास्ते जाती है जिसमें से एक रास्ते पे एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

आदमी ने लाल कलर के जूतें पहन रखें है ब्लैक कलर की पॅन्ट पहन रखीं है आदमी ऊपर की ओर देख रहा आदमी का एक पैर उठा हुवा है।

मुझे यहां पे एक दुकान दिखाई दे रही है दुकान मे बहोत सारा समान दिखाई दे रहे है जैसे बिस्कुट --

एक टेबल के ऊपर दिखाई दे रहा है कुछ और दिखाई दे रहा है कुछ डब्बे दिखाई दे रहे कुछ पानी की बोतलें दिखाई दे रही है और --